सी और C में नेस्टेड इफ और स्विच स्टेटमेंट के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्विच स्टेटमेंट का उपयोग कैसे करें
हम एक उदाहरण की मदद से यह करेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकार्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110 उबुंटू पर जीसीसी और g कम्पाइलर वर्जन 461 पहले हम एक उदाहरण से सीखेंगे कि नेस्टेड इफ और स्विच स्टेटमेंट कैसे लिखें
मैंने पहले ही प्रोग्राम लिख लिया है एक नजर डालते हैं
इस प्रोग्राम में हम इंटिजर्स की रेंज की जांच करने के बारे में सीखेंगे
ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम nested ifसी है
अब मैं कोड समझाता हूँ
यह हमारी हैडर फाइल है
यह हमारा मैन फंक्शन है
मैन फंक्शन के अन्दर हमने दो इंटिजर वैरिएबल एक्स और य घोषित किए हैं
यहाँ हम उपयोगकर्ताओं से 0 से 39 के बीच की एक संख्या प्रविष्ट करने को कहेंगे
हम इनपुट के रूप में य की वेल्यू उपयोगकर्ता से लेते हैं
यह हमारी इफ कंडिशन है
यहाँ हम जांच करेंगे कि क्या y100 है
यदि कंडिशन ट्रू है तो हम प्रिंट करते हैं यू हेव एंटर्ड आ नंबर इन थे रंगे ओएफ 0 9 यह हमारी else इफ कंडिशन है
यहाँ हम जांच करते हैं कि क्या y101 है
यदि कंडिशन ट्रू है तो हम प्रिंट करते हैं यू हेव एंटर्ड आ नंबर इन थे रंगे ओएफ 10 19 इस एल्से इफ कंडिशन में हम जांच करते हैं कि क्या संख्या 20 29 के रेंज की है
और यहाँ हम देखेंगे कि संख्या 30 से 39 के रेंज की है
यह हमारी एल्से कंडिशन है
यदि उपर्युक्त सभी कंडिशन्स फलसे हों तो हम प्रिंट करते हैं नंबर नोट इन रंगे और यह हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है
अब प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करें
कृपया अपने कीबोर्ड पर CtrlAltT कीज़ एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
एक्जीक्यूट करने के लिए जीसीसी स्पेस nested ifसी स्पेस हाइफेन o स्पेस नेस्टेड टाइप करें
एंटर दबाएँ
डॉट स्लैश नेस्टेड टाइप करें
एंटर दबाएँ
हम देखते हैं Enter आ नंबर बेटवीन 0 टो 39
मैं 12 प्रविष्ट करूंगा
आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है यू हेव एंटर्ड थे नंबर इन थे रंगे ओएफ 10 19
दूसरी संख्या प्रविष्ट करें
पुनः एक्जीक्यूट करें
यूपी अरो की दबाएँ एंटर दबाएँ
मैं इस बार 5 प्रविष्ट करूँगा
हमें निम्नलिखित आउटपुट प्राप्त होता है यू हेव एंटर्ड थे नंबर इन थे रंगे ओएफ 0 9
कंडीशनल एक्जीक्यूशन अन्य तरीके से भी किया जा सकता है
स्विच स्टेटमेंट का उपयोग करके
देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है
हम उसी प्रोग्राम में स्विच का उपयोग करेंगे
मैंने प्रोग्राम को पहले ही खोल लिया है
अपने टेक्स्ट एडिटर पर वापस जाएँ
मैंने पिछले प्रोग्राम में इसकी व्याख्या की है
अतः मैं स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में बात करूंगा
यहाँ हम इनपुट्स विभाजित करेंगे यानि य बाय 10 और परिणाम वेरीअबल एक्स में संचित होता है
इसका अर्थ है कि भागफल एक्स में संचित हो जाएगा
भागफल की मदद से हम संख्या की रेंज की पहचान कर सकते हैं
यहाँ हम स्विच कमांड को बताते हैं कि जांच किया जाने वाला वेरीअबल एक्स है
यह केस 0 है
यदि केस 0 ठीक है
तो हम प्रिंट करते हैं यू हेव एंटर्ड थे नंबर इन थे रंगे ओएफ 0 9
यदि केस संतुष्ट है तो हम लूप से बाहर निकलने के लिए ब्रेक का उपयोग करते हैं
हमें हर बार लूप को ब्रेक करने की आवश्यकता होती है
यह इसलिए क्योंकि एक बार में केवल एक कंडिशन ट्रू हो सकती है
यह केस 1 है
केस 1 का अर्थ है यदि एक्स की वेल्यू 1 है
हम प्रिंट करते हैं यू हेव एंटर्ड आ नंबर इन थे रंगे ओएफ 10 19
यह केस 2 है
यहाँ हम प्रिंट करते हैं यू हेव एंटर्ड आ नंबर इन थे रंगे ओएफ 20 29
और यह केस 3 है
यहाँ हम जांच करते हैं कि क्या संख्या 30 39 के रेंज की है
यह डिफॉल्ट केस है
डिफॉल्ट केस निर्दिष्ट करता है कि क्या किया जाना चाहिए यदि उपर्युक्त केसेस में कोई भी ठीक नहीं
यहाँ हम प्रिंट करते हैं नंबर नोट इन रंगे और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
टाइप करें160 जीसीसी स्पेस switchसी स्पेस o स्पेस स्विच
एंटर दबाएँ
टाइप करें160switch एंटर दबाएँ
0 से 39 के बीच की एक संख्या प्रविष्ट करें
मैं 35 प्रविष्ट करूंगा
आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है यू हेव एंटर्ड थे नंबर इन थे रंगे ओएफ 30 टो 39
अब हम देखेंगे कि C में प्रोग्राम को एक्जीक्यूट कैसे करें
टेक्स्ट एडिटर पर वापस आएँ
ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम nested ifसीपीप है यहाँ लॉजिक और कार्यान्वयन समान है
यहाँ कुछ बदलाव हैं जैसे160 हेडर फाइल stdioह के स्थान पर आईओस्ट्रीम है
यहाँ हमने प्रिंटफ और स्कैन्फ के स्थान पर यूजिंग स्टेटमेंट यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और काउट और सिन फंक्शन को शामिल किया है
आप देख सकते हैं कि बाकी कोड हमारे सी प्रोग्राम के समान है
कोड को एक्जीक्यूट करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
टाइप करें160 g स्पेस nested ifसीपीप स्पेस o स्पेस नेस्टेड1
एंटर दबाएँ
टाइप करें nested1 एंटर दबाएँ
0 और 39 के बीच की एक संख्या प्रविष्ट करें
मैं 40 प्रविष्ट करूंगा
आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है नंबर नोट इन रंगे अब C में स्विच प्रोग्राम देखते हैं
टेक्स्ट एडिटर पर वापस आएँ
यहाँ भी लॉजिक और कार्यान्वयन समान हैं
आप देख सकते हैं कि हेडर फाइल आईओस्ट्रीम है यहाँ यूजिंग स्टेटमेंट है
और हमने काउट और सिन फंक्शन्स को बदल दिया है
बाकी कोड हमारे स्विच सी प्रोग्राम के समान है
एक्जीक्यूट करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
टाइप करें g स्पेस switchसीपीप स्पेस o स्पेस स्विच1 एंटर दबाएँ
टाइप करें switch1 एंटर दबाएँ
0 से 39 के बीच की एक संख्या प्रविष्ट करें
मैं 25 प्रविष्ट करूंगा
आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है यू हेव एंटर्ड थे नंबर इन थे रंगे ओएफ 20 29 अब अपनी स्लाइड पर वापस जाते हैं
हम स्विच और nested इफ स्टेटमेंट के बीच तुलना करेंगे स्विच स्टेटमेंट का मूल्यांकन एक्स्प्रैशन के परिणाम के आधार पर किया जाता है
netsed इफ स्टेटमेंट केवल तभी क्रियान्वित होता है जब एक्स्प्रैशन का परिणाम ट्रू हो
स्विच में हम वैरिएबल के विभिन्न वेल्यूस को केसेस के रूप में उपयोग करते हैं
nested इफ में हमें वैरिएबल की प्रत्येक वेल्यू के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना पड़ता है
स्विच स्टेटमेंट केवल इंटिजर वेल्यूस की जांच कर सकता है
नेस्टेड इफ इंटिजर और फ्रैक्शनल दोनों वेल्यू के लिए जांच कर सकता है
यह हमें इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है
सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट सीखे
उदाहरण एल्से ifय10 0 स्विच स्टेटमेंट
जैसे स्विच और nested इफ और स्विच स्टेटमेंट के बीच अंतर के बारे में सीखा
एक नियत कार्य के रूप में क्या कर्मचारी की आयु 20 से 60 के बीच है यह जांच करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें
दिए गए लिंक httpspoken tutorialorg What is a Spoken Tutorial पर उपलब्ध विडियो देखें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
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलाती है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट spoken tutorialorg पर लिखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद